फोटो में अनेक सारे लोहे के पार्ट्स दिखाए जा रहे हैं जो की --

गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें अनेक प्रकार के फूल डिज़ाइनों में व्यवस्थित रूप से --

लगी हुई है वे बाहर एक बाइक खड़ी है नर्सरी के अंदर अनेक सारे पौधे गमलों में लगे हुए हैं।

जिस पे शर्मा ढाबा एंड गार्डन एयर कंडीशनर लिखा हुआ है।